यह हमें किसी जगह का दृश्य दिखाया जा रहा है।

यह दृश्य हमे किसी स्कूल का दिखाया जा रहा हैं।

हमें मेज पर बहुत सारी प्राइस पड़ी हुई नजर--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी दुकान की नज़र आ रही है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी बहोत पुरानी जगह की दिख रही है।

दुकान पुरी गुब्बारों से सजी हुई है।

इसमें हमें बहोत सारी बड़ी बड़ी विक्कल्स --

वह अपना कंप्यूटर पर वर्क करते हुए नजर--